यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिम है यहाँ पर लोग एक्सरसाइज करने आते हैं अपनी बॉडी बनाने आते है।

यहाँ पर हरी-भरी घास उगी हुई हैं यहाँ से नीला खुला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर --

यहां पर एक बहुत बड़ा द्वार नजर आ रहा है। यहां पर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर रंग-बिरंगी फूल रखे हुए हैं। ये फूल सफ़ेद लाल पिले गुलाबी रंग के हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है ये एक किराने की दुकान है यहां पर बहुत सारा सामान मिलता है।